ये तस्वीर में पांच आदमी दिखाई दे रहा है।

और लाइट बल्ब घर का अंदर एक बाहर में एक दिखाई दे रहा है।

दुकान का अंदर खाने वा खाने पीने वाला चीज रखे हैं।

दो गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

दीवार मे बैंक ऑफ बड़ौदा लिख के दिखाई दे रहा है।

आदमी भी दिखाई दे रहा है।

यहां हमें एक सुंदर सा मैदान दिखाई दे रहा है।

इनके पीछे में बहुत बड़ा जंगल भी दिखाई दे रहा है।

और इसका पीछे में टीना का येलो कलर का भी एक ठो दिखाई दे रहा है।

नीचिपु नीचिपु स्कूल लिखे हैं।

पीछे में वॉल में ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

यहां में एक सुन्दर सा कमरा दिखाई दे रहा है।

घर में जो ब्लैक और वाइट का कपड़ा पहन रहे--

बहुत सारा वायर दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में एक कमरा दिखाई दे रहा है।

उसमें बहुत सारा मछलियां भी दिखाई दे रहा है।